एक व्यक्ति के हात मे बड़ा सा नीले रंग का बेग रखा है।

अह अ लोग अह एक शोरूम के बाहर खड़े हुए है एक बड़ा सा रिक्सा खड़ा है उस रिक्सा की बड़ी सी चाबी एक व्यक्ति एक महिला को दे रहा अ है।

उन लोगो के बगल मे काँच के गेट लगे है।

स्टेज के ऊपर दो लड्कीया नाच रही है। उन लड़कियो के पीछे कुछ लड़के भी डांस कर रहे है। उन लड़को ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने ए है।

बड़ी सी काँच की बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग के बाहर की छत पर गेट के सामने स्टूल पर एक सफ़ेद रंग की मूर्ति रखी हुई है।